नमस्कार दोस्तों here document और strings पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में हम
कुछ उदाहरणों की सहायता से विशिष्ट उद्देश्य पुनर्निर्देशन जिसे here documents और here strings
कहा जाता है के बारे में सीखेंगे
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपको bash में shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई हमारी website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system
gnu bash version 42
कृपया ध्यान दें gnu bash version 4 या उपरोक्त अभ्यास के लिए अनुशंसित है
here document के बारे में सीखते हैं
यह text या code का विशिष्टउद्देश्य block है
यह i/o redirect का form है
यह एक interactive program या command line के लिए एक command सूची का प्रबंध करता है
इसे अलग file के रूप में माना जा सकता है
इसे shell script के लिए multiple line input के रूप में भी माना जा सकता है
syntax है command space less than less than space here
इसके बाद अगली line पर हम text inputs दे सकते हैं
इसे lines की किसी भी संख्या से निहित किया जा सकता है
यहाँ text1 text2 textn text inputs हैं
text inputs के बाद अगली line पर हम फिर से कीवर्ड here type करते हैं
यहाँ here document की समाप्ति को दर्शाता है
अब इसे एक उदाहरण के साथ समझाते हैं
मैं here dot sh named एक फाइल खोलूँगी
code की पहली line shebang line है
मैं इस line के बाद code का एक block रखती हूँ
wc word count का निरूपण करता है
wc hyphen w here document में शब्दों की संख्या की गिनती करता है
code का block या text here के दूसरी घटना तक फाइल के रूप में जाना जायेगा
here document में उपस्थित कंटेंट command wc hyphen w के लिए एक input है
here wc hyphen w के लिए delimiter के रूप में कार्य करता है जब multiline input रीढ करता है
यदि हम इसी command को terminal में निष्पादित करने की कोशिश करते हैं हमें output के रूप में 4 मिलना चाहिए
यह इसलिए क्योंकि हमने command wc hyphen w के लिए चार शब्द passed किये हैं
अब file को सेव करने के लिए save पर click करें
अपने keyboard पर एक साथ ctrl alt और t कीज का उपयोग करके terminal पर जाएँ
type करें chmod space plus x space here dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash here dot sh
enter दबाएँ
हम 4 के रूप में output देख सकते हैं
अर्थात here document में शब्दों की संख्या 4 है
program पर वापस आएँ
यहाँ text के शुरूआत में दो अतिरिक्त शब्द जोडते हैं
hello and welcome to bash learning
save पर click करें
फिर से program को निष्पादित करते हैं
terminal पर type करें dot slash here dot sh
enter दबाएँ
अब output 6 है क्योंकि हमने अपने text में दो अतिरिक्त शब्द जोड़े
हम here document में भी एक आर्ग्यूमेंट pass कर सकते हैं
देखते हैं कि एक उदाहरण के साथ यह कैसे करते हैं
मैं एक file hereoutput dot sh खोलती हूँ
cat command files को जोडेगा औऱ standard output print करेगा
ध्यान दें कि हमने here के बजाय this string का उपयोग किया है
यह आवश्यक नहीं है कि आप हमेशा delimiter here का उपयोग करें
आप किसी भी any delimiter का उपयोग कर सकते हैं
यह line 0th zeroeth argument प्रदर्शित करेगी
default रूप से 0th zeroeth argument फाइल का नाम है
यह line program में passed किया 1st argument प्रदर्शित करेगा
यह line program में passed किया 2nd argument प्रदर्शित करेगा
यहाँ हम उसी delimiter this का उपयोग करके document को बंद करते हैं
file को सेव करें
अब program को निष्पादित करें
terminal पर type करें chmod space plus x space hereoutput dot sh
enter दबाएँ
type करें dot slash hereoutput dot sh space sunday space monday
output प्रदर्शित होता हैः
0 th argument is: dot salsh hereoutput dot sh जो कि एक फाइल का नाम है
1st argument is: sunday
2nd argument is: monday
अब here string के बारे में सीखते हैं
here string का उपयोग text या variable से input पुनर्निर्देशन के लिए किया जाता है
input उसी line में single quotes के अंदर उल्लेखित है
syntax हैः command space three less than symbols space single quotes के अंदर string लिखें
अब इसे एक उदाहऱण के साथ समझाते हैं
मैं समान फाइल here dot sh खोलूँगी
यहाँ अंत में मैं type करूँगी wc space hyphen w three less than symbols space single quotes में welcome to bash learning
यह command wc hyphen w में quotes में string को redirect अनुप्रेषित करेगा
अब परिवर्तनों को सेव करने के लिए save पर click करें
हम terminal पर जाएँगे
अब type करें: dot slash here dot sh
हम output 6 और 4 देख सकते हैं
here document में शब्दों की संख्या 6 है और here string में शब्दों की संख्या 4 है
इसी तरह आप अपना here strings लिख सकते हैं
यह हमें tutorial के अंत में पहुँचाता है
संक्षेप में
इस tutorial में हमने सीखा
* here document
* here string
नियतकार्य के रूप में string को
* here डॉक्यूमेंट
* here स्ट्रिंग का उपयोग करके अपरकेस में बदलें
hint: tr space a hyphen z space capital a hyphen capital z
यह characters को lower से upper case में बदलने के लिए command है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
अच्छा bandwidth न मिलने पर आप इसे download करके देख सकते हैं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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह script fossee और spoken tutorial टीमों द्वारा तैयार की गयी है
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद